इसके ऊपर छत पे दो पोस्टर्स लगी हुई है और नीचे में बैलून से सजा हुआ है।

यहां दो टुकटुक रखी हुई है जिसमें गेंदा फूल से सजा हुआ है।

जहां साईड में रेलिंग बना हुआ हैं और एक रिक्शावाला खड़ा है।

के आसपास से बहोत लोग खड़े हुए हैं।

और यहां पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है एस_बी_आई ।

इसके वहां पे पीले रंग का काउंटर बना हुआ है।

बगल में पिलर बना हुआ हैं जो कि मैरून रंग का है।

और एक छत में रस्सी में कपड़ा टंगा हुआ है।

और इसमें बहुत सारी मिर्चीयां नीचे पड़ी हुई हैं।

बाइक का सीट काला और लाल रंग का है।

फोटो ए_टी_म के बाहर का है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ हैं जिसपे लिखा हुआ हैं एस_बी_आई ए_टी_एम ।

जो कि सफेद रंग का टी_शर्ट पहना हुआ है।

साइड साइड में पिलर बना हुआ है और इसमें भी कुछ कुछ लिखा हुआ है।

इसके छत पे एक ब्लू रंग का टब रखा हुआ है।

और आगे में थोड़े से छड़ निकले हुए हैं।

यहां प्रोग्राम हो रहा है जहां पे एक स्टेज बना हुआ है।

में बहुत सारे चीज से सजे हुए हैं।

नीचे मे मिट्टी जमी हुई है और उसके ऊपर कुछ गिट्टी भी है।

बाहर में बहुत बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है।

ये फोटो एक दुकान की है जिसको ओपनिंग हुआ है।

सपोर्ट्स और कुछ सूटकेस रखी--

ये फोटो एक ढाबे का बाहर का है जिस जहां पे पोस्टर लगा हुआ है बादल लाइन होटल ।

इसके आसपास भी और भी दुकानें है ये सब के ऊपर रंगबिरंगा झंडा लगा हुआ--

यहां पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है दीक्षा बैग हाउस ।

इसमें बहोत सारे टायर एक लाइन से रखे हुए हैं।